स्वीर में मुझे एक मंदिर दिखाई दे रही हैं।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

इस तस्वीर में मुझे कुछ चीज दिखाई दे रही हैं।

यहां मुझे कुछ पेड़ दिखाई दे रहें हैं।

इस तस्वीर मुझे एक मैदान दिखाई दे रहा है।

तस्वीर में मुझे कुछ सजावट दिखाई दे रही हैं।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

इस तस्वीर में मुझे कुछ काउंटर दिखाई दे रहे हैं।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

यहां मुझे एक मीटर दिखाई दे रहा है।